सभी डॉक्टर सामने खड़े हैं उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई है सभी ने--

और सफेद रंग के यहां पे सजा के रखे हुएं--

ये एक कपड़ों की दुकान है कपड़ों की दुकान में बहोत ही ज्यादा--

बने हुए हैं और बहोत ही सुंदर अच्छे लग रहे हैं।

सामने एक बाइक्स लगी हुई हैं और एक आदमी सामने दिख रहा है और--

और बहुत ही सुन्दर ऊपर आसमान दिख रहा है। दिन का समय है जो कि बहुत सुंदर यहां पे --

टोकरी में बहोत सारा सामान फ्रूट्स रखे हुए हैं बहोत सारा--

ये डेंटिस्ट का क्लिनिक है जोकि बहोत ही ज़्यादा मशीनें यहां पे रखी गयी है और बहुत ही सुंदर तरीके से--

ये एक बहोत ही बड़ी रेस्टोरेंट है जिसमें--

ये एक फर्नीचर का बेड है जो की लकड़ी का बेड तैयार किया जा रहा है और उसकी तो बहोत ही सुंदर है।